इस इमेज में देखिएगा सामने एक क्लीनिक दिखाई दे रहा है और यहां पर ऊपर ढेर सारे पोस्टर लगे हुए नजर आ रहे हैं।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

इस इमेज मे देखियेगा सामने यहां पर एक स्कूल दिखाई दे रही है बाहर कुछ विद्यार्थी खेलते हुए नजर आ रहे है।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

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर एक हाल दिखाई दे रहा है और जहां पर दीवार पर कई सारी सुंदर तस्वीरें नजर आ रही हैं।

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर खिलौने की दुकान दिखाई दे रही है जहां पर पैकेट्स में कई सारी बार्बी डॉल्स नज़र आ रही है।

इस इमेज मे देखिएगा सामने यहां पर एक पार्क दिखाई दे रहा है और बोर्ड पर यहां पर ओपन जिम लिखा हुआ नजर आ रहा है।

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर एक होटल दिखाई दे रहा है जहां पर टेबल पर कप प्लेट्स रखे हुए नजर आ रहे हैं।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

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर कुछ विद्यार्थी बैठे हुए नजर आ रहे हैं और टेबल के ऊपर कुछ मोजे के पैकेट्स दिखाई दे रहे हैं।

इस इमेज मे देखियेगा सामने यहां पर एक हॉल दिखाई दे रहा है जहां पर सोफा टेबल रखा हुआ नजर आ रहा है।

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है यहां पर दो कार में लोग पेट्रोल भराते हुए नजर आ रहे हैं।

इस इमेज मे देखियेगा सामने यहां पर एक बंगाला दिखाई दे रहा है और गेट के पास मे एक बच्चा खड़ा हुआ नज़र आ रहा है।

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर एक बड़ा सा होटल दिखाई दे रहा है जहां पर टेबल कुर्सी पर बैठकर कुछ लोग खाना खाते हुए नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर एक अम् इंस्टिट्यूट दिखाई दे रहा है और जहां पर एक पीले रंग की बस खड़ी हुई नजर आ रही है।

इस इमेज में दिखेगा सामने यहां पर एक सब्जी मार्केट दिखाई दे रही है जहां पर कुछ लोग सब्जी बेचते हुए नजर आ रहे हैं।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

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर एक गेट दिखाई दे रहा है अंदर एक हॉल में महिला खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर एक बड़ी सी फैक्ट्री दिखाई दे रही है और यहां पर देखिए गेट के बाहर एक व्यक्ति खड़ा नजर आ रहा है।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

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर एक हाल दिखाई दे रहा है और दीवार पर देखिएगा बड़ी सी एक घड़ी लगी हुई नजर आ रही है।

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर एक चर्च दिखाई दे रहा है जहां पर एक व्यक्ति स्पीच देता हुआ नजर आ रहा है।

इस इमेज में दिखेगा सामने यहां पर गेट दिखाई दे रहा है बाहर एक व्यक्ति खड़ा हुआ नजर आ रहा है।